मैदान पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही है जरा सी भी घास नहीं लगी इस मैदान मे कथई कलर मिट्टी है अ आस पास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है जो कि काफी बड़े है।

एक बड़ा सा बेसबॉल का ग्राउंड बनाया गया है यहा पर बच्चे बास्केटबॉल खेलते है बास्केटबॉल के लिए दो जालिया भी लगाई गई है इधर-उधर।

अ गोल करने के लिए एक बड़ा सा पाइप लगाया गया है इसके ऊपर इनको फिट किया गया है अ ग्राउंड के ऊपर कुछ नारंगी हरा और काले रंग का पेंट किया गया है।

बहुत तेज़ निकल रही है ये एक चटियल मैदान पड़ा हुआ है धूप की परछाई जमीन के ऊपर पड़ रही है।

सड़क बनी हुई है इस सड़क पर काफी सारी गाड़ियां पार्क की गई है कुछ फॉर्विलर है कुछ टू व्हीलर गाड़ियां है साइड मे बोर्ड लगा हुआ है।

आ भारतीय रेल आपका स्वागत करता है लिखा हुआ है एक बड़ा सा खंभा लगा है।

आसमान मे अंधेरा जैसा छाने लगा है ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है काला आसमान हो रहा है।